ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसमे हम --

आय एस अकैडमी है नागपुर में और यहाँ पर अपने मैनेजमेंट --

यहाँ पे झंडा वंदन हो रहा है और सभी ने वाइट कपड़े पहने हैं और सामने --